ओर ये ऎसा लग रहा है किसी को श्रद्धांजलि या किसी को याद अर्पित करने के लिए इसे जलाया गया है और ये काफी खूबसूरत मे है इसकी चारो साइड दीवार भी है रेड कलर का --

और इसके ऊपर से ट्रेन गुजरती होगी और ये स्टील ब्रीज है और ये काफी खूबसूरत और मजबूत दिख रहा है और उस तरफ बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे है।

ये किसी स्टेज का फोटो है जो की काफी शानदार और काफी खूबसूरत बनाया गया है जो की लिप्तिनेंट खुशबू जैन किसी फौजी का फोटो लग रहा है और --

ये किसी सैलून का फोटो है जिसमे की एक बंदा अपना पूरा फ़ेस का फ़ेश्यल कराए हुआ है उसपे क्रीम लगाए हुआ है।

एक मशीन भी बड़ा सा रखा हुआ है ये लग रहा है कोई पहाड़ी इलाका है इसमें जे_सी_बी अभी मट्टी खोद रहे है और बड़े-बड़े पोल भी रखे हुए है जो कि काफी अच्छा --

एक उपर से झरना पानी का कल कल करते नीचे गिर रहा है ओर दोनों साइड बड़े बड़े पेड़ और घास हरियाली की तरह दिख रहे है जो की काफी खूबसूरत लग रहा है ।